ये पिक्चर जो हम देख पा रहे हैं--

ये पिक्चर जो हम देख पा रहे हैं क--

ऐसे पिक्चर में एक दिन के समय में पिक्चर ली गई है।

अ शायद ये क्रिसमस डे का फेस्टिवल यहां पे चल रहा है।

ये जो पिक्चर हम देख पा रहे हैं एक इस कपड़ों की शॉप है अह अह जो इस शॉप के अंदर से ये पिक्चर ली गई है यहां पे--

ये पिक्चर हम देख पा रहे हैं एक--

इसलिए पिक्चर अ अंधेरे टाइप लग रही है।

जैसा कि हम इस पिक्चर में देख करके बता सकते हैं।